पीछे की तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

जिसके अंदर एक काउंटर रखा हुआ है काउंटर के अंदर बहुत सारी मिठाइयों के पतीले रखे हुए हैं।

में पीछे की तरफ कुछ लकड़ी के समान और नजर आ रहे है।

और एक बड़ा सा स्लेप नजर आ रहा है जिसके ऊपर कुछ शो पीस रखें हुए हैं पीछे कुछ दरवाजा लग रहा है।

सामने के तरफ एक बोर्ड और लगा हुआ है जो बिल्डिंग के उपर लग रहा है।